देखने से यह दृश्य हमें किसी रूम का दिखाई दे रहां हैं।

मिठाई वाली शॉप की लग रही है।

उसकी पास हमें चार बड़ी बड़ीसी डैम्स भी बनी दिख रही हैं।

रहे हैं यहां पर एक दीवारों पे अलग अलग तरह के पेंट भी किए गए हैं।

कपड़े पड़े हैं और इसे सेल के लिए ल--

यहां पर दो क्रेनें ट्रक से सामान को--

शो की पिंजरे मे बंद है।